और एंबियंस बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है।

आठगाड़ियां हैं एक आदमी भी खड़ा है वह--

फर्स्ट फ्लोर से लिया हुआ है इसमें तस्वीर मेंघर काफी आलीशान है।

काला रंग का टायर रखा हुआ है जिससे लोग उठा के फेंकते हैं और करते हैं।

टॉमी हिल -फिगरजैसे ब्रांड्स हैं तो आपखरीद सकते हैं।